इस थाली मे दो रखा हुआ है साथ मे एक कटोरी मे हरी चटनी भी परोसी गई है।

यहा इमेज ग्रोसरी स्टोर की है इसमे कुछ खाने-पीने की समान जैसे की पारले बिस्किट मागी चॉक्लेट्स कुछ पेय पदार्थ दिखाई दे रहे है और उसकी खरीदी पर कुछ छूट दि जा रही है।

इसके अलावा सुंदर टोकनिया भी दिखाई दे रही है जिनका उपयोग मुलता सामान रखने के लिए किया जाता है।

जिसमे बच्चों के द्वारा हॅंडीक्राफ्ट बनाया गया हैं बच्चों के द्वारा पक्षियों की दौड़ता हुआ इंसान की गाय की घर की पेपर क्राफ्टिंग की गयी हैं।

यहा दक्षिण भारत क्षेत्र है जहां पर कन्नड़ या तमिल भाषा बोली जाती है इस रूम मे एक बैठक चल रही है और दीवार मे बाबा साहेब आंबेडकर का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

बहुत से लोगों इस बैठक मे किसी विशेष रणनीती बनाते दिखाई दे रहे है।

चिल्लर किराना दुकाने हर गली मोहल्ले मे पाई जाती है इसके साथ ही मापतोल करने का एक यंत्र भी दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति फोटो खिचावाता भी दिखाई दे रहा है दुकान का कलर हरा है।

शोरूम दो मंजिला है और बहुत ही आकर्षक लग रहा है यहाँ मेन रोड के साइड में स्थित है।

ऑफिस के बाजू तरफ़ एक सहायता केंद्र बना हुआ है जहाँ से लोग अपने पार्सल और कूरियर की जानकारी ले रहे है।

यहाँ पर दुकान के कामों से संबंधित एक एक नोटिस भी लगा हुआ है।

यहा एक विशाल लाइब्ररी दिखाई दे रही है जहा पर टेबल कुर्सिया लगी हुइ है यहा पर बहुत से छात्र पढाई करते दिखाई दे रहे है हॉल का रंग पिला है और उपर जाने के लिये सीढी भि दिखाई दे रहि है।

यहा एक मेकॅनिक कि शॉप है जो कि टु व्हीलर को रिपेअर करने का काम करता है।

यह दृश्य किसी घर कि छत का है जहा पर छत डालने का काम चल रहा है छ्त मे पुरा लोहा बिछा दिखाइ दे रहा है और सीमेंट घिट्टी के मसाले का गोल बना कर छत मे फैलाया जा रहा हे।

दुकान की ॲड्वटाईजमेंट के लिए एक बच्चा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जो की व्हाइट ग्रीन और रेड कलर का है कुछ लोग खड़े होकर चाय का आनंद लेते दिखाई दे रहे है।

हॉल मे एक सुन्दर स्टेज बना हुआ है जिसके बॅकग्राऊंड को फ़ुलो से सजाया गया है दुल्हा दुल्हन के बैठने के लिये सुन्दर सोफा लगा हुआ है और एक एल_इ_डी स्क्रिन लगी हुइ है साथ हि मेहमानो के बैठने के लिये कुर्सिया भी लगी हुइ है।